बैठा है अच्छा सा बाल-वाल बना के और पीछे साइड येलो कलर की टीशर्ट भी पहने हैं कुछ आदमी बैठे हुए हैं एक लड़की भी हैछोटी सी बच्ची --

ये किसी का घर है मेन गेट से सो --

मारुति खड़ी है ब्लैक कलर की जिसका अगला चक्का दिख रहा है और गेट --

इसमें दो टेंपो दिख रहे हैं बैटरी के इलेक्ट्रिक वाले --

ग्रीन कलर का पेड़ भी लगा हुआ है।